यहा पर बहूत सारे वर्कर्स को एक साथ काम करते हुए देखा जा सकता है सामने एक फ़ैक्टरि जैसी है जिसमे कूड़े वगैरा कुछ रख रहे है।

एक व्यक्ति है जो बुढ़िया के बाल को बचे रहा है यह रात्री के सहा यह रात्री का समय है।

यहा पर बहुत सारे लोगोंकों एक साथ देखा जा सकता है कुछ लोग खड़े हुए है और ओ बहुत सारे लोग बाइक वगैरा चला रहे है।

यहा पर एक व्यक्ती है जो की एक टेबल वगैरा पे बेठा हुआ है अगल बगल मे बहुत सारी टेबल व कुरसिया लगाई गई है नीचे कार्पेट दिखाई दे रहा है ऊपर बहुत सारी लाइटे जलती हुई देखि जा सकती है।

यहा पर बहुत सारे लोगोंकों एक साथ देखा जा सकता है बगल मे बड़ी बड़ी कुछ मूर्तिया रखी हुई है इनहके पीछे कराकट लगी हुई है कराकट मे बहुत सारे लोहे के हॅण्डल वगैरा लगाए गए है।

और बहूत सारी महिलाओ को एक साथ देखा जा सकता है जिनके बीच मे एक व्यक्ती खड़ा हुआ है उसने नीले रंग का कुड़ता पाजामा पहन रखा है।

यहा पर कन्स्ट्रकशन का काम चल रहा है बहुत सारे लोगों को एक साथ देखा जा सकता है बहूत सारे वर्कर है और यहा पर कुछ पटरा वगैरा एक साथ बिछाया गया है।

ऊपर पंखा लगाया हुआ है ऊपर एल_ई_डी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है सामने इसके डेस्क पे क्याल्कुलेटोर और कुछ कापी वगैरा रखे गए है व्यक्ती ने एक जाकेट पेहन राखी है नीचे फर्श नही बिछी हुई है।

यहाँ पर यह एक मेडिकल का शॉप है जहा पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके हात पे शायद फ्रॅक्चर है उसमे बॅन्डेज की गई है।

यहाँ पर एक कई व्यक्तियों को एक दुकान के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है शायद ये कोई बिल्डिंग है।

यहा पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो की एक फल की दुकान पे है अगल बगल मे बहुत सारे फल वगैरा रखे गए है सामने कुछ केले रखे हुए दिखाई दे सक रहे है।

यहाँ पर बहुत सारे लोगों कों एक साथ देखा जा सकता है सामने एक कार दिखाई दे रही है अगल बगल मे बहुत सारे यहाँ पे वर्कर्स काम करते हुए देखे जा सकते है व इस कार का बोनट खुला हुआ है।